और उधर किनारे बोहोत सारा पेड़ लगा हुआ है।

ये एक स्कूल का फोटो है। स्कूल के बाहर तीन गाड़ी खड़ी हैं और पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहाँ एक रोड दिखाई दे रहा है। रोड पे कुछ आदमी चलती हुई दिखाई दे रहे हैं।

यह एक टेबल है। टेबल के ऊपर एक काले रंग का प्लेट रखा हुआ है।

यह एक ठेला लगा हुआ है और उस ठेले में लाइट लगी हुई है।

गमलें में पौधे लगे हुए हैं।